ये एक जिम की फोटो है जहां पर लड़का जिम कर रहा है।

इस रिजॉर्ट में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी दिख रहा है।

यहां पर एक आदमी और औरत फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए हैं।

शादी होल की सजावट बहुत ही खूबसूरती से हुई है।

कई सारे पिलर भी खड़े हो चुके हैं।

ये शोरूम काफी खूबसूरत दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारी खाने पीने की चीजे भी रखी हुई है।

ये बुटीक काफी बड़ी लग रही है।

काफी ज्यादा हरियाली भी दिख रही है।

यहां पर दो बड़ी कारें भी खड़ी हुई हैं।

जो कि लाल कलर का दिख रहा है।

यहां पर एक कॉलम लेटर के लिए भी बना हुआ है।

यहां पर काफी सारे बड़े बड़े मिरर भी लगे हुए हैं।

कपड़ों की दुकान का फोटो है।

फिलहाल यहां सिर्फ दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस पेट्रोल पंप में कोई भीड़ नहीं दिख रही है।

ये एक बहोत ही खूबसूरत दुकान दिख रही है।

इस दुकान के अंदर बलूनस भी लगे हुए हैं।

जिसके बाहर काफी सारे लोग भी चलते फिरते दिख रहे हैं।

इसके बाहर काफी सारे लोग दिख रहे हैं।

जोकि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है।

यहां पर साड़ियों की बहुत ज्यादा वैरायटी भी है।

और यहां कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं।